इस इमेज में मुझे एक बड़ा तालाब दिख रहा है पानी के ऊपर कुछ जो पत्तियां पड़ी हुई है जो कि ब्राउन कलर की है।

ब्लू कलर की टी-शर्ट पैंट पहना हुआ है कुछ लड़कों ने येलो कलर की टि-शर्ट पैंट पहना हुआ है कुछ अ ल लड़के ने सॉक्स रेड कलर के पहने हुए हैं।

हैप्पी जो बीच में कांच लगे हुए हैं। बिल्डिंग के ऊपर में आर.एम.पी. सेकंड पंचायत समिति ब्लू अक्षरों में लिखा हुआ है।

इस इमेज में मुझे ज़ेबरा क्रॉसिंग रोड नजर आ रहा है रोड का कलर ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा है रोड के सामने में गाते नजर आ रहा है जो की ब्लू कलर का है गेट के उसकी--

एक बोर्ड लगा है जिस पर फिफ्टी परसेंट ऑफ दिया हुआ है पन्नी में कुछ सामान बांध के रखा गया है।